पीछे ब्लू ग्रा ब्लू बैकग्राउंड है और बहोत सारे लोग क्रिश्चियन के साइन के आगे खड़े हैं।

टेबल के साथ ही ग्लास लगा है ग्लास के अंदर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और वो वाइट कलर पिंक कलर --

कुछ काम चल रहा है और सामने ही व्हाइट पेपर है।

दिखाई दे रहा है और सामने ही--

जिसमें की ब्राउन व्हाइट कलर हुआ--

इस पिक्चर मे दो लोग खड़े है।

और साथ में थ्री विंडो है जो व्हाइट कलर की ल--

बहता पानी दिखाई दे रहा है पानी का कलर वाइट है।

ऊपर का कलर यहां पर ब्राउन दिखाई दे रहा है और सामने वाच लगी है।

और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में बहोत सारे लोग गेट के आगे दिखाई दे रहे है।

और सामने ही एक सड़क जा रही है और सड़क में गाड़ियां चल रही है।

और साथ ही कुछ मशीनस दिखाई दे रही है जिसमें--

अथवा बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे--

इस पिक्चर मे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और साथ ही गेट --

इस फोटो में बहोत सारी चेयर्स लगी हुई है।